इस इमेज में सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है यहां पर बुद्ध भगवान की मूर्ति नजर आ रही है।

और आसमान में सफेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं।